अलग-अलग तरह के फूल लगे हुए हैं सफेद लाल गुलाब--

और यहां बड़ा सारा काउंटर बना हुआ है और एक--

यहां एक टायर का शोरूम बना हुआ है यहां पर एक बहुत बड़ा बड़ी तरह के टायर रखे हुए हैं और अलग अलग--

कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं और यहाँ एक पतला सा पाइप भी जा रहा है।

अलग तरह की वो भी दिख रही है।

वगैरह रखे हुए हैं। और सामने की ओर एक

लाइटों वाला स्टेज बना हुआ है और ऊपर की ओर भी लाइटें लगी हुई हैं।

साइड में खिड़की भी है। और यहां बहुत सारी टेबल और बहुत सारी--

उसबो एक छोटी किसी चीज को धो रही और साइड में उसके लैंप भी लगा हुआ है।

को चारों तरफ से कांच से ढका हुआ है। यहां पर डोर्स भी लगे हुए हैं और राइट साइड अलग अलग तरह के--

एक पुतला खड़ा हुआ है। बाहर एक स्कूटर रखी हुई है और यहां पर चार पुतले खड़े हुए हैं उन्होंने अलग अलग कलर के स्वेटर पेहन रखें है।

यहां एक हवेली जैसी एक रेड कलर की मल्टी बनी हुई--

यहां पर चढ़ने के लिए चार सीढ़ीया लगी हुई है और साइड में एक औरत यहां से जा रही है।

और उसी के पास में एक दीवाल के।

साइकिल रखी हुई है और एक लोना भी रखी हुई है और साइड में बैठने के लिए एक कुर्सी रखी हुई है।

तो बैठे हुए लोग भी गोल-गोल घूम रहे हैं।

जहां पर तरह-तरह की साइकिल्स मोटरसाइकिल्स कार्स स्कूटर रखी हुई है।

यहां एक स्लाइड है यहां एक गार्डन है जो आर्ट साइड में बॉर्डर लगी हुई है। और यहां पर बड़ी सारी--

हार भी हार बंदर और ये सब बने हुए--

साइड में एक पानी की टैंकी रखी हुई है और--

और यहां पर जाने के लिए एक स्लाइड बनी हुई है।

और यहां पर अलग अलग पॉट्स भी रखे हुए हैं कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े ऊपर की ओर एक--

पेड़ के पास में सेड़ी लगी हुई है जिसके ऊपर जाने का रास--

यहां एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम हुसैन--

यहां बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक अ जाने का रास्ता बना हुआ है और साइड में एक रेलिंग भी बनी हुई है एक खंभा भी बना हुआ --

जिस रेलिंग के पास में दो आदमी खड़े हुए हैं और साइड में--

पहाड़ के बहोत ऊंचा बना हुआ है और तरह तरह--

तरफ से लोग उधर से आ रहे हैं यहां पर बैंड बाजे वाला भी आ रहा है और साइड में बहुत सारे लोग भी हैं।

यहां जो ग्राउंड है उसका नाम बास्केट बॉल ग्राउंड है।

और उसके बाद एक और बड़ा गेट लगा हुआ है।

दो सीढ़ियां हैं और उसके बाद एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है।

झोपड़ी के पास में दो मंजिला एक घर बना हुआ--

उसके पास में एक लड़की बैठी हुई है लड़की के पास में--

हुए दिखाई दे रहे हैं इस पेट्रोल पंप का नाम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप .

जहां काउंटर है जहां दो लड़के खड़े होकर बात कर--

और वहां पर कुछ व्यक्तियां खड़े हुए हैं और--

और इस मेले का नाम हरिहर क्षेत्र सोधपुर मेला दो हज़ार उन्नीस है।

लोहे सरियों की जाल बिछी हुई--

जिसका नाम अमर्जेट टेस्ट्यूब बेबी सेंटर लिखा हुआ है और यहां एक बड़ा सारा गेट है और एक--

ढेर पड़ा हुआ है और अलग अलग तरह की चीजे यहां पर टेबल टूटी फूटी पड़ी हुई--

यहां पर एक गुरु बैठे हुए हैं जिनके ऊपर एक अ ऑरेंज कलर अलग का पर्दा ऊपर डला हुआ है।

यहां एक हरे कलर की मंटी है जिसमें एक--

के अंदर ना कुछ नमकीन रखे हुए हैं सबसे नीचे जो है--

यहां एक नई की दुकान है जहां पर दो कुर्सियां रखी हुई है पीछे की और एक टेबल रखी हुई है जो बड़ी सारी है और एक स्टॉल रखा हुआ है।

यहां एक शादी का डेकोरेशन है जो कि वाइट पर्दे और ब्लू कलर के पर्दों से लगा हुआ है और ऊपर की और--

और तरह-तरह की यहां पर गोल-गोल कलर की डिश भी रखी हुई है और यहां पर--

यहां बहुत सारी बाईकें रखी हुई हैं और ऊपर की ओर एक आदमी--

ब्ल्यू कलर की शर्ट पहनी हुई है और ऊपर एक गणपति की मूर्ति भी रखी हुई और साइड में फूलों का डेकोरेशन हुआ है।